अंकल खड़ा हुआ है वो अपनी फोटो निकलवा रहे है वो ऊपर से कुछ पहने हुए है पीछे भी एक अंकल खड़े हुए दिखाई दे रहे है ।